लगता है हिन्दू का दुकान है तभी तो इतना आदमी आया है |

खेती-बाड़ी करता है सब कोई यहाँ पे जंगल है धान का इ सब है वहाँ पे पीछे एक बिल्डिंग है बिल्डिंग नहीं है शायद ए कुछ तो होगा।

और कोई नहीं है अभी यहाँ पे लगता है कहीं --

प्लस जो सामान भर भर के रखा --

और आदमी सब एक पंडित किसी को कुछ बता रहा है और सामान सब है | देखने में अच्छा लग रहा है | एक लड़की --

लाइन का तार है कंप्यूटर है और पोस्टर सब है बहुत सारा और किसी का फोटो है | अभी कोई नहीं है यहाँ पे लगता है कहीं गए है।

कचरा हैं कचरा का डब्बा भी है यहां पे देखने में सुंदर लगता है।

साड़ी पहना है तभी तो साड़ी खरीदेगा।